जहाँ पर सुखा कचरा और गिला कचरा रीसायकल होता है खाद बनता है वही का यहाँ पे गाड़ी आ गया है कचरे का।

और यहाँ पे कृशन लोग जो हैं वो अपने फादर को याद कर रहे हैं।

ये किसी पार्क में लगा हुआ है और अ अगल-बगल में लाइट्स भी लगा हुआ है एक फैन के टाइप का है ये अ झरना।

इनका जो डांस कॉस्टुम है ओ भी बहुत ही काफी अच्छा है रेड कलर का है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने से ये बहुत अच्छी डांसर भी है।